एक ठो मंदील है | एक मंदिर गोल्डन और वाइट से पेंट किया हुआ है | मंदील पंडाल बासे लगा --

बड़ा सा मार्केट है मार्केट --

एक पत्थल है उस पत्थल मे से झरने गिर रहे हैं बहुत सारे पानीयां लगा का कलर हरा --

तीन मंज़िले स्कूले है स्कूले के बॉडी लगा हुआ है गेट पर से।

ये कॉपी है आगे से काउंटर मे शीशा लगाया हुआ है ।

बहुत सारा रखा हुआ है ।

पे का पोस्टर शटर खुला हुआ है।

इमेज काफी धुंधला है उसपे

फेस वॉश भी बिकता है ।

एक बहुत बड़ा सा हॉल है हॉल में दोनों साइड टेबल लगा हुआ है बहुत सारे कुर्सियां लगा हुआ हैं।

उ भूरा कलर हिट ऑरेंज कलर ब्लू कलर पीला कलर लगा हुआ अच्छा

और रखा हुआ बहुत सुन्दर देखने मे फूल उल लग रहा है

बहुत सुन्दर सजाया हुआ है बहुत सारे

घड़ियाँ पहने है बल्ला पहना हुआ